जहां पर बहोत सारी पाईप्स भी दिख रही हैं।

साइड में एक टेबल है चेयर --

और कुछ गायीया भी खड़ी हुई हैं इसमें सींगों वाली हैं।

फूलों के पौधे भी दिख रहे हैं।

ये एक सोलर पैनल लगा हुआ है जो कि किसी घर की छत पर है।

नीचे एक डिश का छतरी लगी हुई है और एक बॉक्स पड़ा है।

और वहां पर कुछ पेड़ भी लगे हुए हैं।

जमीन पर कुछ हरी हरी घांस भी लगी हुई है।

जे_सी_बी बनी है जिस पर तीन स्टूल जैसे रखे हुए हैं।

नीचे क्यारी भी बनी हुई है हरे हरे पौधे दिख रहे हैं।

दुकान का नाम है विनायक कार बाजार--

ये एक योगा क्लास दिख रही है।

ये एक वेट तौलने वाली मशीन दिख रही है जिस पर लिफाफे में कुछ टंगा हुआ है।

साइड में वाइट कलर की बहुत सारी बोरियां भी पड़ी हुई हैं।

ये एक बिल्डिंग सी दिख रही है।